सामने एक पोस्टर भी लगा हुआ है कैंपस पर चलने के लिए रास्ता भी बनाया गया है।

यहां काले रंग की लकड़ी भी दिख रही है।

सामने एक मोमो का स्टोर दिख रहा है जिसके ऊपर लाल हिस्से से पेंट किया गया है।

पीछे छोटे छोटे घास उगाई गई हैं और उसके ठीक पीछे बहुत सारे छोटे छोटे मोटरसाइकिल पार्क की गई है।

अंदर एक पानी का बोतल है जिसमें एक सफेद दूसरा नीला--

अंदर डेस्क के अंदर बहोत सारे बोतलों को रखा गया है।

अलग अलग बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं और पीछे आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है।

सामने एक किराने की दुकान है जिसमें अलग अलग प्रकार की सामानों को रखा गया है।

यहां पर एक आदमी चलते हुए जा रहा है जिसके एक हाथ में छतरी है।

सामने एक बाइक का पुर्जा रखा हुआ है जो अभी फिलहाल बन रही है।

सामने एक मस्जिद की तस्वीर दिख रही है जिसके ऊपर चारो तारा बनाया गया है।

पीछे आसमान बिल्कुल साफ है यहां अलग अलग प्रकार की बिल्डिंगें नजर आ रही है।

इसके ठीक दूर बहुत ज़्यादा पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह एक अस्पताल की तस्वीर है जिसके बाहर अस्पताल और प्लस का साइन --

किराने की दुकान है उसमें भी बहुत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं।

इसके ठीक भीतर एक दुकान है दुकान के ऊपर कुछ मिक्चर नजर आ रही--

पीछे एक डस्टबिन का डिब्बा भी है।

ऊपर एक पेटीएम का क्यू_आर भी रखा हुआ है एक बोतल और बैग भी रखा हुआ है।

इसके ठीक बाहर एक बहुत बड़ी पेड़ है।

यह एक किराने की दुकान है जिसमें अलग अलग प्रकार के सामानों को बड़े ही व्यवस्थित ढंग से रखा गया है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा की ए_टी_एम है उसकी सामने की स्कूटी और उसके ठीक आगे एक बाइक लगी हुई है।

ब्रैंड हब हॉट लिप्स हॉट लिप्स रेस्टोरेंट नीचे गमले पर छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं।

पीछे बहुत ज्यादा पेड़ दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग का रंग सफेद है।

सामने रोड पर बहोत ज्यादा कार पार्क की हुई नजर आ रही है जिसमें से कुछ काली है तो कुछ सफेद--

के अंदर बहुत सारे सामानों को रखा गया है इसके ठीक बाहर एक लाल कलर की डस्टबिन है।

सामने एक बहुत बड़ी दीवार नजर आ रही है ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी है।